सामने जो हमें हैं नीले आसमान का सीन नज़र आ रहा हैं उसके बीचो बीच पहाड़े नज़र आ रहे हैं और उसके बीच --

सामने हमें नज़र आ रहा है चार-पांच टेबल्स रखे हुए हैं जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं जो पैटिंग्स वगेरह कर रहे हैं और ड्राइंगस वगेरह कर रहे हैं।

केरला होटल लिखा हुआ है ।

इसमें जैसा लग रहा जैसे गेट वगेरा लक्क्ड़ के जो बनाये जाते हैं वो हैं।